यहाँ पर एक बहुत बड़ा डी.जे. है | यहाँ पर छे बाजा लगे हैं और बिच में एक लाइट है |

यहां पर लोग सब भी हैं और एक बस है।

यहाँ पर बहुत बड़ा बल्ब है और यह पर बहुत सारे वृक्ष भी हैं और यह पर एक मचारदानी सेट किया हुआ है।

एगो ट्रेन ऑफ़ इंडिया --

यहाँ पर कोई ए.टी.एम. भारतीय डाक है इंडियन पोस्ट चौबीस होर्स ।

यहाँ पर कोई एक सर्विसिंग --

यहाँ पर पेट्रोल पंप है सारे आदमी पेट्रोल लेने जा रहे हैं |

कुछ आदमी पैदल जा रहे है कुछ आदमी गाड़ी से जा रहे है।

यहाँ पर एक बड़ा सा फुलवाड़ी है और बहुत सारे खजूर के पेड़ है इसके ऊपर कोई सीसा लगा हुआ है।

और बहुत सारे कलम भी हैं | यह आदमी अपने दुकान को अच्छे से साफ कर रहा --

बाहर आ रहा है यहां पर बलून से सजाए हुए है दुकान और गेंदा --

यहाँ पर दो भैस है पानी में और एक भैस को लकड़ी में बांध दिया गया है और दोनों भैस --

दोनों को चाट रही है दोनों भैस यहाँ पर उसके पीछे में बहुत सारा जंगल है यह नज़र बहुत सुन्दर --

यहां पर वो एक टेंपू लगा हुआ है।

नाव के पास खड़ा है और इसके पीछे में एक --